कुछ लोग दिखाई दिए जा रहे हैं। पीले कलर का घर सबसे आगे है।

ये एक दुकान का चित्र है जिसमें लिखा हुआ है युनिवेर्सिटी बुक कंपनी --

कुछ लोग उसमें बैठे हुए हैं। साथ ही पानी का घड़े भी हैं।

यह दृश्य एक दुकान के बाहर का है। जहाँ पे हरा बोर्ड बना हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोर --

साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं।

कई टाइप के पेड़ दिखाई दे रहे है साथ ही एक लाल कलर में गोल्डन कलर से लिखा हुआ --

दो गाड़ियाॅं है एक बाइक पे सवार है और एक स्कूटी पे सवार है।

जोकि बाइक ही में ज़्यादातर आते हैं।

कुछ लोगो के पास-पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो बजायेगें और गायेगें साथ ही साथ। कुछ लोग उनको देखने आये हुए हैं।

यहाँ पर कुछ लोग दिखाए दिए जा रहे हैं। कुछ गाड़ी के साथ तो कुछ पैदल।

और दूर कुछ पेड़ दिख रहे हैं और सामने भी कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

कुल्हड़ भी है साथ ही में आप देखेंगे कि चाय जो है बारह रुपये की लिखी हुई है।